इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक चर्च की तस्वीर नहीं है ये एक मस्जिद की तस्वीर है और यहां पे--

और इसमें भोले बाबा जी की तस्वीर लगा रखी है और उनकी पूजा की जा रही है।

इस शॉप पे सारा दूध का सामान मिलता है और दूध दही जो कुछ भी लेना हो यहां पे मिलता है।

एक किलो में हो या पांच किलो तक कितने तक भी आप ले सकते हो और एक आदमी--

इसी तरफ आ रहा है थैली लेकर के और एक लेडिज है ओ कुछ सामान खरीद रही है।

इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि एक पार्क है या किसी--

और एक साइड में हरी घास लगा रखी है ये स्पेशल घोड़ों के लिए इंतजाम कर रखा है।